इस फोटो में मुझे एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है। उसका गेट दिखाई दे रहा है। ऊपर लगा एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

जिसके अंदर बहोत सारे सामान रखे हुए हैं। किताबे रखी हुई दिखाई दे रही हैं। उसके ऊपर एक --

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा समुन्द्र दिखाई दे रहा है उसमें एक पुल बना हुआ है उसमें भी पानी निकलता हुआ दिख रहा है।

एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है। साथ में एक आदमी भी खड़ा हुआ है। एक पुल दिखाई दे रहा है।

पहाड़ पे एक छोटी-छोटी घास दिखाई दे रही हैं। एक नदी दिखाई दे रही हैं छोटी सी। उस में पानी भरा हुआ हैं पानी नीले कलर का हैं ।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

तार से तार दिखाई दे रहे हैं और मुझे एक लकड़ी का --

एक पेड़ दिखाई दे रहा है। एक आदमी दिखाई दे रहा है। पेड़ पे पत्ते लगे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है। जिसमें एक बड़ी नाव रखी हुई है।

मुझे यहाँ पे एक बड़ा-सा अ हॉल दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहे हैं।